और शुद्ध हवा लेने के लिए --

ये एक बहुत ही बड़ा आलिशान महल का फोटो है।

यहाँ दो औरत बैठ कर के सब्जी काट रही हैं और वहाँ दो जेंट्स मिल कर के भात बना रहे हैं।

उम्म बे बेड है जिसके अंदर --

और यहाँ पर लाइट भी लगा हुआ है। अंधेरा ह है।

ये एक उम्म बड़ा कुर्सी का ह --

ये एक दुकान का फोटो है जहाँ पर हेयर कटिंग किया जाता है।

यहाँ पर एक पार्क का फोटो है पार्क के चारों साइड फूल लगाया गया है।

बैंक का ए.टी.एम. का फोटो है।

बाहर दो पुलिस भी खड़ा है बहुत सवारी भी बाहर खड़ा है।

और इस इसका सीढ़ी भी बहुत बड़ा है।

ये एक होटल का फोटो है जहाँ पर टेबल लगा हुआ है और --